तथा इसमें सूर्य जो एकदम ऑरेंज कलर का उगा हुआ है।

और एक कैमरा भी लिया गया है।

दिवाल जो है बेबी पिंक कलर का है।

ये फर्श में होल कर रहा है।

वे उसे उसकी सहायता से वो नीचे झुक कर नीचे के फर्श में होल कर रहा है।

लोहे की कुछ मशीन रखी गई जिस पे लिखा गया है।

आगे की तरफ में गमले में करके दो छोटे से फू फूल लगे हुए हैं।

यह कोई रेस्टोरेंट है जहां पे एक आदमी जो है खाना बना रहा है।

और माता एक बड़ी सी माता रानी--

इसमें बैठने के लिए बनाया गया है।

यह एक रूम है जिसमें बीच में एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ है।

यहां पे घर जो है ग्रीन और व्हाइट कलर के बने हुए हैं।

के सर्विस की शॉप है जिसका नाम है राम गैस सर्विस शामली।

कुछ शादी का फंक्शन चल रहा है।

एक मशीन है जिसमें भी सामान रखी गई है।

यहां पे रेड कलर से डेकोरेट किया गया है।